घेरा हुआ है अ उसका फूल लगाया हुआ है। अ ऑरेंज कलर का है। लाल कलर का है। पीला कलर का है।